बहुत सारा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

यह एक साड़ी का दुकान लग रहा है।

साड़ी के दुकान के पास एक स्कैनर दिखाई दे रहा है जी पे का।

पीछे एक कबर्ड दिखाई दे रहा है जिस पे बैग रखा हुआ है।

यहां पे बहुत सारा ट्रैक्टर लाइन से खड़ा हुआ है जो ब्लू कलर का है।

जो पन्नी है वो व्हाइट कलर की है। दीवाल भी व्हाइट कलर की है।

यह सिद्धि विनायक ड्रेसेज का फोटो है।

यहां स्नेही होम्योपैथिक स्टोर्स और उसका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है।

यह मैदान में छोटा छोटा घास कटा हुआ है।

रास्ते के फोटो में एक आदमी रेड थेला ले के चल रहा है।

औरु बहुत सारा पेड़ भी लगाया गया है ऑरेंज कलर ।

और एक आदमी रेड कलर का बैग लेके दिखाई दे रहा है।

आप देखिए एक लड़की मास्क अह हेलमेट और पैड पहन के खेलती हुई दिखाई दे रही है।

ग्रीन कलर का सोफा और जो टेबल है वो ग्रे कलर की नजर आ रही है।

यहां पे वॉलीबॉल का नेट की पोस्ट लगाई गई नजर आ रही है।

यहां पे जो न जो फ्लोर है वो पूरी रेती की बनी गई है।

यहां पे सेल्फ सर्विस ऑटो गन का बोर्ड मारा गया नजर आ रहा है।

ये एक गणपति बाबा की मूर्ति की फोटो नज़र आ रही है।

एक पुल नजर आ रहा है एक मंदिर नजर आ रहा है।

दीवार व्हाइट कलर की है ए_स ए_सी का यूनिट दिख रहा है।

तो फायर इस्टिंगविसर भी दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का है।

एक कुर्सी एक ऊपर जाने का स्टेयरकेस रखा गया है।

यह एक मंदिर का फोटो दिखाई दे रहा है जो येलो कलर का है।

यह एक रस्ते का फोटो है।

एक सीधी आंखो दिखाई दे रही है।

दो चेयर है सामने वो रेड कलर का है आदमी का शर्ट व्हाइट कलर का है।